और चट्टानों में ग्रीन ग्रीन सा और रौशनी भी आ रही है।

में पीछे नीचे में उसके अ कारपेट ग्रीन कलर की फर्श और मल्टी कलर के कारपेट ग्री अ रेड कलर की कारपेट दिखाई दे रही है।

और भी अ कुछ लोग हैं जो सामने खड़े हुए हैं।

और भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और कई सारी बुक्स हैं |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

बिल्डिंग दिखाई दे रही है क्लॉक टावर टाइप । पीछे ग्रीनरी दिखाई दे रही है पेड़ है।

और टी.वी. दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और अ नीचे उसके बगल में पानी दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे हैं बलून दिखाई दे रहे हैं |